ऊपर का भवन हरा हरा है जिसमें एक औरत पिंक कलर की सूट पहन का खड़ी हुई है | ऊपर में एक लाईट दिख रही है जो नीले रंग की है।

के जस्ट नीचे फैशन के दुक- बोर्ड के पास में एक तार दिख रही है यहाँ रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है।